जहाँ रंग-बिरंगी फूल नज़र आ रहे हैं।

यहाँ एक रोड है। अ ब ब्लैक कलर का जहां हरे भरे भरे पेड़े नज़र आ रही हैं और --

बाइक के बराबर में दो लोग खड़े हैं।

और इसके बराबर में एक टावर खड़ा है लोहे --

स्काई उनके पीछे बोहोत से ग्रीन कलर के पेड़ नज़र आ रहे हैं।

गोलदार रेड कलर के थम्भ्ले हैं।

और एक वाइट और रेड कलर की एक वो खड़ा सा एक बहोत वो खड़ा सा।

और इसके ऊपर एक ए.सी लगी हुई है। दू दो मंजिले पर।

जहाँ किताब पढ़ रहा है।

जहाँ एक लोग बैठा है और उसके बगल में एक कैफ़े है।

और एक सामने फुवारा ।

एक वाइट कलर का जाल सा लगा हुआ है।

जहाँ एक खेत जहाँ एक --

स्टैंड पर लोहे के जहाँ एक कुर्सी खड़ी हुई है।

जहाँ पीली दिखाई दे रही है।